है नारियल है नारंगी है संतरा है ईख है और यहां पे कुछ सारी लेडिज नाक से सिंदूर की हुई है।

जो की देखने में काफी खुबसूरत --

यहाँ पे हरे-हरे घास हैं। बड़े-बड़े पौधे है और साइड से रास्ता है जाने के लिए।

वॉच लगे हुए हैं साइड में और ये लड़ी लगी हुई है। दोनों साइड स्काई और पिंक में पर्दा लगा हुआ --